घर है उसमें बहुत सारे सोफा है।

ईस्कूल है ईस्कूल में बेंच बिछा है टेबल बिछा है।

उसमें बहुत सारे बच्चे लोग बैठे हैं।

उसमे बहुत सारे डाई लगाने वाला है।

पीछे पेड़ पौधे हैं जमीन में एक सफेद --

बहुत बड़ा चटान है ये पथले पथल का उसके बीच -बीच में छोटे छोटे पेड़ है .

जमीन में एक आदमी कम्बल ओढ़ के सो रहा हैं।

एक कॉलेज है कॉलेज में बहुत सारे खिड़की है उसके ऊपर पोस्टर लगा है छत में लाइट लगा है नीचे हरे-भरे पौधे लगाए है।